में एक बड़ा सा रोड है जो की रेंड कलर का है जिसमें व्हाइट कलर की गाट तानिए है जिनमें तीन बच्चे दौड़ रहे हैं सामने वाला ने ब्लैक पहना है।

एक बड़ा सा लोहे का सामान रखा है जिसमें गोल चकरी है ग्रीन कलर का चार-पांच लड़की लोग आधे-आधे बैठ रहे हैं साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है मोबाइल लेकर के जिसने काला कपड़ा पहना है।

बन रहा है जिसमें रोड बिछे हुए है कुछ वाइट दिख रहा है कुछ ब्लॉक दिख रहा है कुछ सीमेंट बालू चिप्स की गोल को वहाँ पर ढ़ाल रहे है।

और नीचे का फर्श पूरा ब्लाक कलर का है एक बड़ा सा बॉल है जिसके ऊपर एक आदमी अपना पैर रखके निचे हाथ दबाया हुआ है उसने व्हाइट कलर की गंजी ब्लाक पैंट पहना हुआ है रेड जूता है।

पक्की घरों में जिसकी दीवार और शिलिंग का कलर व्हाइट है एक ए.सी लगा हुआ हैं वाइट कलर का साइड में खिड़की दिख रही है जिसमें व्हाइट कलर का कांच है साइड में भी ब्लैक कलर का है।

सब पक्के का रूम है जिसके ऊपर की सीलिंग व्हाइट है जिसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए है कुछ लाइट है वाइट कलर की अंदर में कुछ व्हाइट कलर पहने लोग है सबके हाथ में एक प्लेट है उनलोग खाना खा रहे हैं।